यह एक कमरें का दृश्य है जहां टेबल रखी हुई है टेबल पर एक--

और सारे बिस्तरों पर कंबल भी रखे हुए हैं।

यहां एक आदमी ने अपने हाथ में फ़टाका फोड़ा हुआ है जिसमें से धुआं निकल रहा है।

है दुकान के बाहर एक ट्रक खड़ी हुई है दूसरी तरफ एक ऑटो भी जा रही है।

रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ है सोनू रेस्टोरेंट ।

लोग खडे हुए है और कुछ लोग टेबलों पे बैठे हुए है।

जहां फिश एक्वेरियम मिलते हैं। बहोत सारे फिश एक्वेरियम है।

जिसके हाथ में पाइप है और एक पास में बाल्टी भी रखी हुई है।

एक तरफ खिड़की भी है। खिड़की पर परदे लगे हुए हैं।

यह एक मॉल के एक सेक्सन का दृश्य है। जहां बहोत सारे खाने के सामान रखे हुए है।

यह एक ओपन एरिया की तस्वीर है जहां दूर दूर हरा हरा मैदान दिखाई दे रहा है।

दूर कुछ बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है और कुछ छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक तस्वीर है जिसमें कालीन बिछा हुआ है।

सारे लोगों ने जैकेट पहने हुए हैं सामने की तरफ चार लड़के खड़े हुए हैं।

लाइनें लगी हुई है एक लाइन कार की है और एक लाइन टू व्हीलर्स की है।